यहां पर बहोत सारे गाड़ी लगे हुए हैं बगल में एक ब्लैक कलर का कार है।

यहां पर बहोत सारे आदमी लोग हैं।

यह एक सब्जी दुकान का तस्वीर दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारे सब्जी लगे हुए हैं।

सामने बहोत सारे गाय लगे हुए हैं सब गाय ब्राउन कलर का है।

और बगल में एक बिल्डिंग है लाल कलर का पेंट किया हुआ।

यह एक रेस्टोरेंट का तस्वीर दिख रहा है।

यह कोई जगह का तस्वीर दिख रहा है।

और यहां पर एक ए_सी भी लगा हुआ है वाइट कलर का और उसका आगे एक पंखा भी है।

और यहां पर ऊपर में बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

यहां पर पीछे में बहुत सारा पेड़ पौधा भी है और अगल बगल बहुत सारा बिल्डिंग है।

अगल बगल बहोत सारा बाउंड्री टाइप में दिया हुआ है।

यह एक कॉलेज का तस्वीर दिख रहा है कॉलेज का नाम संत पॉल कॉलेज रांची है ।

सब टेबल वाइट कलर का है और यहां पर चेयर भी है ब्राउन और ब्लैक कलर मिक्स है।

यहां पर कुछ सारे आदमी नहा रहे हैं और बाहर में भी कुछ सारे आदमी खड़े हैं।